यह एक गाड़ी है। पीछे खुली हुयी है समान रखने कि जगह है इस पे एक मशीन का तार लगा हुआ है मशीन चल रही है और एक आदमी बैठा हुआ है। एक मोटरसाइकिल है। यहाँ पे कई सारे शोपे भी है बोरिंग भी रखी हुयी है यहाँ पे।

ये भी एक बस है। यहाँ पे एक आदमी दो आदमी खड़े हुए हैं। बस में कुछ पढ़ रहे हैं और बस में शीशे लगे हुए हैं।

और काफी अंदर अँधेरी में है। यह गुफा और गुफा के अंदर जो सर्कल सा दिया गया है वो व्यक्ति देख रहा हैं।